इससे किसानों को बड़ी मदद होती है। इस ट्रैक्टर के कारण किसानों के बड़े-बड़े खेत बड़े ही कम घंटो में जुताई हो जाती है।

एक स्कूल है । यह स्कूल के बच्चे लोग ने थर्माकोल के ऊपर बहुत अच्छी डिजाइन और पेंटिंग की गई है । यह थर्माकोल के ऊपर एक बहुत अच्छा डिजाइनर घर बनाया गया है ।

यह एक मोती महल डिलक्स है यह मोती महल डिलक्स में बहुत सी सामान मिलती हैं जैसे कपड़े घड़ी मोबाइल और अलग-अलग चीजें इस मोती महल डिलक्स में मिलती है ।